कुछ बच्चे व्यायाम कर रहे हैं।

यह एक फोटो है और इस फोटो में --

पहाड़ का रंग काला दिखाई दे रहा है और साथ में वृक्ष हरा है।

यहाँ एक चित्र और इस चित्र में --

दिखाई दे रहे हैं और पहाड़ों का ढलान --

यह एक मार्केट है। मार्केट के अंदर कई सारी दुकान हैं।

गार्डन है जिसमें कई छोटे-छोटे वृक्ष हैं। कुछ वृक्ष बड़े भी हैं।

वृक्ष के पास कई सारे मकान है जिसका रंग ब्लू और --

एक छोटा सा स्मारक बना हुआ है। स्मारक का नाम जमुना स्मारक गांधी चौक है।

दो लोग हैं। कुछ लोग साइकिल चला रहे हैं और कुछ लोग पीछे खड़े हैं।

कुछ पुस्तकें जमीन पे रखी हुई हैं और कुछ पुस्तकें --

यह एक चित्र है और इस चित्र में --

किला दिखाई दे रहा है।

सफेद रंग की टोपी पहने है।

राधा और कृष्ण जी का एक छोटा-सा सुंदर मूर्ति है।

मिट्टी जैसा दिखाई दे रहा है और साथ ही में कुछ पहाड़ें दिखाई दे --

कई सारे भगवान की मूर्तियाँ दिखाई दे रहे हैं।

जिसका रंग हरा और पिंक दिखाई --

एक अकादमी को दर्शाया गया है। इस अकाडमी का ना --

फलों के ऊपर कुछ हरे भरे पत्तियां हैं और फलों का रंग --

एक सुंदर सा गार्डन को दर्शाया गया है।

पथरीली जैसा बना हुआ है और साथ ही में बहोत सारे हरे भरे वृक्ष --

इस गुफा में दो लोग दिखाई दे रहे हैं। एक लोग लाल रंग की --